दिखाई गई फोटो में हमे कुछ बाउंड्री कुछ शटर एक जनरेटर कुछ भवन कुछ बोर्ड एक प्रतिमा आदि दिखाई दे रहे है प्रतिमा--

एक सीढ़ी आदि हमें दिखाई दे रहे हैं दिवार का कलर पीला हैं।

कुछ खिड़कीयाँ दरवाजे आदि दिखाई दे रहे है।